व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें पेड़ लगे हुए हैं सामने एक गेट है।

सामने दीवाल दिखाई दे रहा है जिसका कलर --

सामने व्हाइट कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है जहां नीले कलर से--

सामने एक ए_टी_एम नजर आ रहा है ऊपर बोर्ड में--

इसके पीछे वाइट रंग की एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

ऑरेंज कलर के टेबल के ऊपर--

वहीं पे थोड़ी दूर ग्रीन कलर का पेड़ लगा हुआ है बाहर ग्राउंड में फ्लावर पॉट है जिस जहां पे बहोत सारे--

पैरालाइट लिखा हुआ है काले रंग से बीच में ऐ_सी लगी हुई है वहां बहुत सारे लाइट हैं।

एक ब्राउन नजर आ रहा है।

व्हाइट कलर का पंडाल दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारी लड़कियां डांस कर रही है।

जी पंजाबी ढाबा लिखा हुआ है।

सामने डांस क्लास नजर आ रहा है जो वाइट कलर का है।